इस जगह में एक स्कूटी और दो बाइक खड़ी हुई है।

जोकि सब लोग एक ही ड्रेस पहने हैं।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

दो आदमी खड़े हैं जिसमें से की किसी का भी चेहरा दिखाई नही दे रहा है।

जो कि दोनो कार ठीक कर रहे है।

उसकी साइड में भी और एक कार खड़ी है।

और उसके नीचे एक टायर भी रखी हुई है।

उसके साइड मे एक शीशा लगा हुआ है।

जिस बोर्ड में आप कुछ कोई भी मोबाइल चारज लगा सकते हैं।

इसमें कि लिखा हुआ है गौरी आश्रम।

उसके आगे एक बस दिखाई दे रहा है और रोड के आगे एक ट्रक भी है।

और एक दुकान बंद हैं ऊपर साइड घर है।

इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

उसका साइड में बल्ब भी लगा हुआ है आदमी चेयर में बैठा हुआ है।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो कि दुकान--

एक अंदर मे एक साइकिल दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक यहां पे दो आदमी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी के हाथ में कॉपी पकड़ा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है जिसमे से कि एक फौजी दिखाई दे रहा है ।

और उसके साइड में ही दुकानदार बैठा हुआ है।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

और पुल के ऊपर कुछ लड़के खड़े हैं।

इसके उस तरफ बहुत सारे सामान भी रखे हुए है।

उधर ऊपर साइड एक पोस्टर लगा हुआ हैं।